इसमें जब क्रिसमस पड़ता है तो बच्चे बहुत ही भिम्म होने लगते है और यह जगह बहुत अच्छा है|

यह एक मॉल है। यहाँ पे अनेक चीजें शैंपू ब्रश कोलगेट रूम फ्रेशनर खाने पीने की चीजें अनेक पदार्थ यहाँ अनेक समाने मिलती है जैसे फेसवॉश फेस अ- फेस क्रीम बहोत ही अ बहोत ही--

यह एक टी कंपनी है जहाँ पे चाय पत्ती बनती है। चाय पत्ती यहाँ की चाय पत्तियां बहोत अच्छी होती है। चाय और--